यहां पर बरडे बर्थडे वाला टोपी भी दिखाई दे रहा है ऊपर को ऊपर का झाला मारे रखे हुए हैं।

लोहे की मदद से बनी हुई है ऊपर की ओर सीढ़ी नजर आ रही है जो सीमेंट की मदद से बनी हुई है।

यहां पे सुखी लकड़ियां भी नजर आ रहे हैं।

दीवार में वॉल पुट्टी भी की गई है दीवार में दो खिड़की दिखाई दे रहे हैं।

फील्ड का दृश्य बना हुआ है जहां पे काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनकी कलर अनेक है यहां पे गेम हो रही है नीचे की ओर छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की ओर छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रही हैं यहां पे लकड़ी की मदद से खंबे बनाए गए हैं जिससे तार पासिंग की गई है।

यहां पे बाहर को एक बड़ा सा पोस्टर टंगे हुए हैं जिसमें बाल का पिक्चर्स बने हुए हैं।

यहां पे एक बाउंड्री मारी हुई जिसकी कलर येलो हैं यहां पे ईंट दिखाई दे रहे हैं।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

पर की ओर पोस्टर लगे हुए हैं नीचे की ओर एक कार खड़ी हुई है जिसकी कलर व्हाइट है।

नीचे की ओर छोटी छोटी घास वगैरा भी नजर आ रहे हैं।

इनके गले में फूल के माले पहनाए गए हैं नीचे की ओर रेड कलर के कपड़े बिछाए गए हैं नीचे की तरफ कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके कपड़े के कलर अनेक हैं पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट है पीछे की ओर एक बोर्ड लगाए गए हैं।

यहां पे लोहे की मदद से रेलिंग बनाए गए हैं।

टेबल के ऊपर एक कीबोर्ड रखी हुई है एक मॉनिटर भी रखा हुआ है साइड में कुछ सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

इनकी कलर ब्लैक एवं व्हाइट और ब्लू और क्रीम है।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

ऊपर की ओर तीन चार बोर्ड नजर आ रहे हैं।

नीचे के ओर एक रोड दिखाई दे रहे हैं जहां पर नीचे ओर पक्की भी की गई है।

साइड में लोहे के रेलिंग लगी हुई है यहां पे लोहे की मदद के खंभे बनाए गए है।

ऊपर के ओर काफी सारे समान रखे हुए हैं।

बाहर पे दो बाइक लगे हुए हैं जिसकी कलर रेड एवं ब्लैक है।

यह एक ब्लॉक का दृश्य बना हुआ है जहां पर शीशे के मदद से बड़ा सा गेट बनी हुई है।

यहां पे काफी सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कपड़े कलर अनेक है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य बना हुआ है जहां पे छत को ढालते हुए दिखाई दे रहे है।